कुछ सफ़ेद दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहोत सारी औरते बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे है और एक ये बहोत बड़ा सा मैदान है यहाँ पर बहोत सारी घासे भी दिखाई दे रही है सामने की तरफ सड़क दिखाई दे रही--

मुझे यहाँ पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर यहाँ ऑक्सीजन सिलिंडर लगा हुआ है यहाँ पर दो--

मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़े से बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसको क्रीम रंग से पेंट किया गया है कत्थई रंग के बॉर्डर लगे हुए है यहाँ पर --

और शायद ये बाल कटवाने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है सामने की तरफ काँच दिखाई दे रहा है शिशा यहाँ पर कुछ बोतले रखी हुई है बोतलों में सफ़ेद रंग का भरा हुआ है कुछ--

आसमान में बादल छाए हुए है एक आदमी दिखाई दे रहा है जो अपने दोनों हाथो को फैला रखा है वाइट कलर की पैंट पेहन रखी है लाल रंग की टशीट पेहन रखे है और यहाँ पर एक चबूतरा टाइप का बना है उसी पे खड़ा--

जिनके अंदर बोतले रखी हुई है टीन जैसी छत्त दिखाई दे रही है जो की लोहे खम्बो के ऊपर खड़ा किया गया है एक लड़का साइड में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है खिड़की दिखाई दे रही --

मुझे यहाँ पे सड़क दिखाई दे रहा है सड़क पर बहुत सारे लोग आते-जाते दिखाई दे रहे है यहाँ पर बैरियर्स भी बनाए गए है।

मुझे यहां पर एक ऑटो रिपेयरिंग सेंटर दिखाया गया है अंदर की तरफ कुछ काउंटर भी रखे हुए हैं और उसम कुछ चीजें भी रखी गई है।

मुझे यहाँ पर शंकर जी का एक मंदिर दिखाई दे रहा है जो की अ गोल्डन रंग से पेंट है गेरुवा रंग से पेंट है ऊपर ये--

मुझे यहाँ पर एक सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है और यहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ रखी गयी है निम्बू पन्नी में बांध- बांध के रखा गया है टमाटर गाजर --

कीबोर्ड मुझे नजर आ रहा है माउस रखा हुआ है एक कॉपी और पेन भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ लोग --

मुझे यहां पर लोगों की भीड़-भाड़ दिखाई दे रही है कुछ लोग कुछ औरतें झुकी हुई हैं नीचे की तरफ यहां पर जैसे कुछ चीज़ें बिक रही हो और --

मतलब इसमें बिरयानी रखी हुई है बोटिया दिखाई दे रही है और कुछ चावल सफेद दिखाई दे रहै है और कुछ पीले दिखाई दे रहै है एक गिलास रखा हुआ दिखाई दे रहा है कुर्सी रखी--

मुझे यहां पर एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बसंतपुर।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

मुझे यहां पर एक फील्ड दिखाई दे रहा है जहां पर मैच खेलने की ड्रेस एक लेडी ने पहन रखी है ऊपर से हेलमेट भी लगा रखा है।

पानी का रंग हरा हरा सा दिखाई दे रहा है और यहां पर पेड़ है किनारे किनारे के साइड में बहुत सारे पेड़ है।